लोग यहाँ पे आते हैं घूमते हैं टाइम पास करते हैं और जंगल का नजारा को देखते हैं और मनोरंजन करते हैं।

यह एक चर्च है और यहाँ पे क्रिस्चियन धर्म के लोग आते हैं। प्रे करने और यहाँ पे क्रिस्चियन धर्मो की शादियाँ भी की जाती है।

यह एक पार्क है और यहाँ पे लोग आते हैं घुमने यहाँ पे घुमने में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे घुमने कि बहुत सारी जगाहें होती है ।

यह टोयटा की कार है और टोयटा की कार --